बहोत सारी लाइटें लगी हुई है और यहां पर कुर्सियां भी धरी हुई है और यहां पर मेज भी धरी हुई है।

और यहां पर एक भैंस और एक कटिया भी खड़ी है।

यहां पर यह बराबर में एक घर दिख रहा है और यहां पर एक दुकान भी दिख रही है जिसमें पैडिया बनी हुई है और यहां पर स्कूटरी भी खड़ी हुई है और एक लड़की भी यहां पर दिख रही है।

और लोगों ने यहां पर अपनी चप्पल भी काट रखी है और यहां पर बाल्टी भी धरी है और एक मैट भी बिछ रहा--

बना हुआ है और यहां पे आगे लाइटें भी लगी हुई ऐं ।

यहां पर हमें यह बर्गर और चाउमिन की दुकान दिख रही है और यहां पर चिप्स और नमकीन के पैकेट भी टंगे हुए है।

चित्र मे हमको बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

लाइटे भीं लगी हुई है।

दो रिक्शा खड़ी हुई नजर आ रही है जोकि बिल्कुल नई है और यहां पर नीचे इंटिया बिछी हुई है।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

यहां पर हमें ये एक समुंदर दिख रहा है जिसके अंदर बहुत बड़ा जहाज चल रहा है।

यहां पर हमें यह ढोलकों की दुकान दिख रही है जिसमें बहुत सारी ढोलक धरी हुई है।

यहां पर हमें ये एक सड़क दिख रही है कच्ची जहां पर बोहोत सारी ईटयां धरी हुई है।

और यहां पर एक आदमी और खड़ा हुआ है जो कि पेंसिल ले रहा है।

और अंदर भी यहां पर बहुत सारी बाइके खड़ी हुई है और यहां पर पेड़ पौधे भी लग रहे हैं और यहां पर गेट भी लगा हुआ--

इस पिक्चर में हमें एक यहां पर दुकान दिख रही है जिसके अंदर लैपटॉप धारा हुआ--

और यहां पर कंप्यूटर भी धरा हुआ है और लाइटें भी यहां पर लग रही है और पीछे यहां पर स्टूल भी पड़ा हुआ है।

यहां पर ये एक हॉस्पिटल दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बेड पड़े हुए हैं।